ट्रांसफॉर्म लगा है बिजली की खंभे जा रहे हैं यहां से बिजली के तार भी--

यह महादेव शुद्ध वैष्णो ढाबा के बाहर का इमेज है जिसमें एक थार कार खड़ी है काले कलर की जिसके बाहर एक लड़का भूरी टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने खड़ा है।

हैं और गट्टे बहुत सारे रखे हुए हैं जिनके अंदर कुछ सामान भरा हुआ है।

इस चित्र में एक आदमी दिखाई दे रहा है एक पानी की बोतल दिखाई दे रही है।

बहुत सारे बल्ब के बॉक्सेस रखे हुए हैं।

इस चित्र में हमें दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। डस्टबिन दिखाई दे रही है।